नमस्कार आपका स्वागत है
आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एक इमेल स्क्रिप्ट बनाएँ विशेष रूप से जब आप एक यूज़र का एक वेबसाइट पर पंजीकरण कर रहे हैं
आप कैसे उन्हें इमेल भेजकर प्रमाणित करते हैं कि वह पंजीकृत हो चुके हैं
मैं इसे कुछ हद तक एक स्क्रिप्ट बनाकर करूँगा एक सेंड मे एएन इमेल स्क्रिप्ट
यह एक एचटीएमएल फॉर्म में होगा जिसमें आप एक विषय और एक सूचना लिख सकते हैं और निर्दिष्ट किए एड्रेस पर भेज सकते हैं
अतः हम एक एड्रेस वेरिएबल बनाएँगे
मैं यहाँ अपना हॉटमेल एड्रेस टाइप करूँगा
आप देख सकते हैं जब मैं अपना वर्तमान हॉटमेल पेज खोलता हूँ और इनबॉक्स पर क्लिक करता हूँ यहाँ मेरे द्वारा कोई भी इमेल्स नहीं है
इस समय यहाँ कोई भी नये इमेल्स नहीं है
अतः यह एड्रेस है मेरे एड्रेस वेरिएबल में
मैं वेरिएबल को नया नाम टो दूँगा
हम इसको भेजने के लिए मैल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे
हमारे पास प्रेषक और विषय यहाँ होगा
हमारे पास एक मानक सब्जेक्ट होगा जो है इमेल फ्रॉम फ्पेकेडमी
अगला हमें एक एचटीएमएल फॉर्म की आवश्यकता है जो जमा करेगा
मैं एक खुद से जमा करने वाला बनाऊँगा
अतः चलिए यहाँ कुछ एचटीएमएल कोड रखते हैं
मेरे पास यहाँ एक फॉर्म होगा जो इस पेज में सेंड मे एएन इमेल डॉट पह्प के साथ जमा होगा
मेथोड पोस्ट होगा
हम अपना फॉर्म यहाँ समाप्त करेंगे
यूज़र कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो वे यहाँ विनिर्दिष्ट इमेल एड्रेस पर भेजना चाहते हैं
स्पष्ट रूप से आप इसे महत्व दे सकते हैं
जब फॉर्म बना रहे हैं आप कह सकते हैं कि आप इस विशिष्ट एड्रेस पर भेजना चाहते हैं
सेंड मे एएन इमेल स्क्रिप्ट केवल इतनी ही होगी ईमेल जिसे आप अपनी एक वेबसाइट में सम्मिलित करना चाहते हैं
अब हमारे पास एक टेक्स्ट इनपुट होगा
यह मुझे ईमेल भेजने वाले व्यक्ति का नाम होगा
अतः आपके पास टाइप टेक्स्ट होगा जिसका नाम नामे है
हमारे पास अभी के लिए मैक्स लेंग्थ 20 के बराबर होगा
इसके नीचे हम टेक्स्ट की जगह बनाएँगे
अतः मैं टेक्सटेरिया टाइप करूँगा और इसको इस प्रकार से समाप्त करूँगा
फिर हम इसे मेसेज नाम देंगे
हम एक पैराग्राफ की शुरुआत रखेंगे और यहाँ एक पैराग्राफ का अंत
और यहाँ नीचे हम एक सबमिट बटन बनाएँगे जिसकी वेल्यू सेंड के बराबर होगी
याSend मे थिस ठीक है
अतः यदि आप हमारे पेज पर आते हैं और यहाँ इस पेज को चुनते हैं
यह नाम के लिए जगह है और यह सूचना के लिए जगह है
अतः मैं यहाँ नामे लिखूंगा और यहाँ मेसेज लिखूंगा
और अब यह काफी बेहतर दिख रहा है
हमारे पास हमारा नामे बॉक्स है और मेसेज बॉक्स है
और जब हम इस बटन को क्लिक करते हैं ईमेल चला जाएगा
ठीक है तो सर्वप्रथम अपने पह्प कोड के भीतर हमें जाँचना होगा कि सबमिट बटन दबाया गया है या नहीं
इसके लिए यहाँ हमारे पास हमारा इफ स्टेटमेंट कोष्ठकों में है और ब्लाक के लिए हमारे कर्ली कोष्ठक यदि कंडिशन सही है
कंडिशन इन कोष्ठकों के भीतर होगी
कंडिशन सबमिट बटन का पोस्ट वेरिएबल होगा
जब तक सबमिट बटन के पास एक वेल्यू है एक वर्तनी की गलती अतः जब तक सबमिट बटन दबाया गया है यह एक वेल्यू रखेगा और वह वेल्यू है सेंड मे थिस
इसका यह मतलब है कि फॉर्म जमा हो चुका है क्योंकि बटन दबाया जा चुका है
अतः इसके भीतर पहला कार्य हमें करना है कि हमें फॉर्म से डेटा प्राप्त करना है
और वह व्यक्ति का नाम है जो फॉर्म जमा करके ईमेल भेज रहा है
और उसका नाम इस फॉर्म में यहाँ पर है माफ़ कीजिये यहाँ नामे नामक फील्ड में
साथ ही हमारे पास मेसेज है अतः हम आसानी से इस वेरिएबल संरचना की प्रतिलिपि बना सकते हैं और यहाँ अंदर यह मेसेज लिख सकते हैं
इसको जाँचने के लिए मैं लिखूँगा एचो नामे
और मैं मेसेज को इसमें आगे जोड़ दूँगा
चलिए इसे जाँचते है
यहाँ मैं टाइप करूँगा Alex
और यहाँ मैं टाइप करूँगा ही there
सेंड मे थिस पर क्लिक करिये और हमें एलेक्स और ही there
यहाँ मिल गया
ठीक है अतः हमें पता है कि फॉर्म डेटा सफलतापूर्वक जमा हो गया है
इस विडियो के अगले भाग में हम सीखेंगे कि कैसे इसे कैसे मान्य करें और अंत में इस मेल को यहाँ इस ईमेल आईडी में विनिर्दिष्ट यूज़र को भेजेंगे
अतः मुझसे अगले भाग में मिलये
अभी के लिए अलविदा
मैं रवि कुमार आईआईटी बॉम्बे की ओर से आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद